जो इसपे राजस्थान हिपरेज का बोर्ड है।

हॉर्लिक्स है या कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

और एक लोहे का नीले रंग का गेट है।